और यहां ए_सी भी लगी हुई है और नीचे में बलूंस पड़े हुए हैं और--

और यहाँ कंगी है और स्प्रे बॉटल --

और कुछ सैकलें भी दिखाई दे रही है और--

यहां रोड में लगने वाली दोकान है।

मुक्त भारत लिखा हुआ है।

हैं बहोत सारी चीजें हैं यहाँ पे।